यहां पर अगल बगल कई सारे हरे भरे पेड़ और पौधे भी लगे हुए हैं।

जहां पर कुछ बेंचे और चेयर टेबल लगे हुए हैं।

यहां एक कांच भी दिखाई दे रहा है।

यहां ऊपर से सीलिंग की तरफ कई सारे पंखे लगे हुए हैं।

सामने की तरफ चार से पांच गाड़ियां भी दिख रही है जो कि दो पहियों वाली है।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

यहां पर कई सारी लाल रंग की कुर्सियां भी लगी हुई है।

यहां पर कई सारी औरते सफेद रंग के कपड़े पहने हुई है।

यहा है चित्र किसी शादी के हाल का दिखाई दे रहा है।

जहां पर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है जहा ऊपर की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पर चार छोटे सोफे और दो सफेद रंग के गद्दे और उसके ऊपर एक लाल रंग का तकिया दिख रहा है।

यहां बगल में एक शटर भी लगा हुआ है।

यहां कई सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर कई सारी काली तारे भी दिख रही है।

सामने की तरफ सड़क में दो बकरियां भी है।

यहाँ कुछ आदमी भी रोड पर दिख रहे हैं।